चिकित्सालय की तस्वीर है इस चिकित्सालय में बहुत सारे डॉक्टर अपने --

यहां पर दवाईया के पर्चे बना कर यह निः शुल्क इलाज कर रहे है यह एक डॉक्टर साहब है जिनके पास बहुत सारी दवाईया है।

यह कार्यक्रम की प्रस्तुति देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि यहाँ पर बैठकर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं।